व्हाईट सा एक साईक मास्क सा पेहना रखा है ताकि कुत्ता किसी को काटे नहीं।

इस फोटो में दिखाई दे रहा है एक डी_जे का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है और काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं इसमें--

इस फोटो में आप देख सकते हो इसमें जैसे ये एक मशीन दिखाई दे रही है बड़ी सारी और ये किसी फैक्ट्री एरिये का दिखाई दे रहा है फोटो ।

और एक गोल घूमने वाला चक्कर सा दिखाई दे रहा है इस मशीन के अंदर--

साइड में ये एक सूटकेस टाइप में रखे दिखाई दे रहा है और--

इस में बाहर भी कुछ है ची लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ये रेड और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है ए_सी रूम्स और नॉन ए_सी रूम्स और वाईफाई ट्वेंटी फोर हॉवर्स लिखा दिखाई दे रहा है।

ऐसी बजट ल र पार्टी वार्टी के लिए भी इसे बुक कर सकते है सारी चीज लिखी हुई है बाइक दिख रही है लाइट दिख रही है।

और कंप्यूटर के रखने के कई सा चार पांच मेज दिखाई दे रही है एक सफेद रंग के बाकी चॉकलेटी रंग की मेज दिखाई दे रही है।

और कुछ लोग ट्रेनर ट्रेनर नहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे।

इस फोटो में आप देख सको कपड़े पहन के दिखाई दे रहे हैं कपड़ों का शोरूम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे देख सको ये हाईवे का फोटो है जिसमें गार्ड ड्यूटी भी दिखाई दे रही है और नीचे साइन अह लिखा है पैदल का क्रॉसिंग वोसिंग का कुछ लिखा हुआ है।

इस फोटो में देख सकते हो आप ये काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है जिसमे बाहर दो लोग खड़े हुए हैं और येलो का गेट से दिखाई दे र--

अ मशीन लिखि है रखी है जिसपे मैंन की तरह--